हे की सीढ़ी रखी है मशीन रखी है खुदाई करने की मशीन है टेबल है।--

टूल है कुर्सी रखी है सामान रखा है।

बोतल रखी हुई है।